दिखाई दे रही है के आजू बाजू में कछु हरियाली जैसी दिखाई दे रही है दिखाई दे रहें हैं | एक स्टूल पे एक पानी पीने की ठंडी बोटल के --

यहाँ स्टेज पे दो लड़की है दो लड़का दिखाई दे रहे हैं एक पोस्टर लगेहू बोहोत बड़ो दिखाई दे रओ और यहाँ पर मुरली के में दिखाई दे रहो है --